इस छबि में हमें एक बहुत ही भव्य एवं बड़े इमारत का दृश्य उसे अपनी सीमा रेखा के बाहर से दर्शाया गया है।

इस छवि में हमे एक बहुत ही भव्य एवं सुंदर धार्मिक स्थल का दृश्य दर्शाया गया हैं।

आम भाषा मे इन बाजारो को सुपर मार्केट या मॉल कहा जाता है इन दुकानों मे वस्त्रो के साथ-साथ काफी सारी वस्तुए उपलब्ध होती है।